एक स्टेज दिख रहा है उस की डेकोरेशन की गयी हैं जिस के सामने तकत डले हुए हैं तकत के ऊपर चदर डली हुई हैं।

बहुत सारी कुर्शिया लगी हुई हैं एक कच कुर्शि का कलर रेड हैं दीवाल का कलर ब्लेक एंड वाईट हैं ऊपर एक फेन भी लगा हुआ हैं।

सामने एक बैक हैं जिसके ऊपर एक बोर्ड लगा है जिसके ऊपर वाईट ग्रीन एन्ड ब्लू हैं जिसके ऊपर लिखा हैं स्टेट बेंक ऐ.टी.एम ।

के दोनों साइड पेड़ तथा घास भी लगी हुई हए पेड़ का कलर ग्रीन है।

सामने एक स्विमिंग पूल बना हुआ है जिसके साइड में एक रेड कलर का बैग रखा हुआ है तथा बहुत सारी बॉटल रखी हुई है।

उपर एक बाइक भी दिख रही है और बहुत सारे पड़े लगे हुए है जिनका कलर ग्रीन है।

सामने बहुत सारे मसाले टंगे हुए हैं जैसे की मेंगो मसाला मीट मसाला सोनी मसाला और कुछ मैगी की पैकेट भी टंगी हुई है और एक टोरी--

सामने एक हॉल दिख रहा है जिसमें बहुत सारे कपड़े रखे हुए है और ये छत में बहुत सारी लाईट लगी हुई है।

बैनर भी लगे हुए है और एक महिला खड़ी हुई है है और बहुत सारे चेयर लगी हुई है ।